एक लड़का उस हाथी पे बैठा है कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहें हैं कुछ लोग बारी में बैठे दिखाई दे रहें --